पिक्चर में ये कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो गा आ पार्क में है जो आसमान स्काई ब्लू कलर की यूनिफार्म और --

और वहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं जहाँ पर ऑरेंज कलर का पेंट और वाईट कलर का पेंट दिख रहा है| और कुछ और वृक्ष लगे हुए --

कुछ बाइके खड़ी हुई है जो ब्लैक कलर की है लगे हुए है चार बाइक दिख रही है।

पिक्चर में एक शॉप दिख रही है जहां पर कुछ बॉक्स रखे हुए हैं जहां पर वाइट कलर पे एक बॉक्स है जो ऊपर लिखा है। पिक्चर में एक शॉप दिख रही है जहां पर कुछ बॉक्स रखे हुए हैं जहां पर वाइट कलर पे एक बॉक्स है जो ऊपर लिखा है।

और एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है जहां पर सिईऐटी लिखा हुआ है कुछ शॉप दिख रहे हैं कुछ दुकाने दिख रही है।

इस पिक्चर में कुछ ताले अ लोहे का सामान डला हुआ है और वेह स्लेटी कलर में दिख रहा है।